--हो लाइट जल रहे है ।

है और साथ में झींगा भी नज़र आ रहा है ।

और ढेर सारे हरे भरे पेड़ नजर आ रहे है।

अपनी सकल देख सके वैसे पानी नजर आ रहे है ।

तीन चार सीडियां भी नजर आ रही है ।

टोपियाँ नजर आ रही है और ग्लव्स भी नजर आ रहे है।

छोटी-सी रस्ते नज़र आ रही है।

और यहाँ ढेर सारे पत्ते --

ढेर सारे टाइल्स और --

मॉल बुक है उसमें--

और बाइक्स भी खड़े हुए है और कुछ पेड्स भी नज़र आ रहे है ।

ढेर सारे पेड़ नजर आ रहे है।

और ये कोई बेकरी की तरह नज़र आ रहे है।

और उनके अन्दर सामान रखा हुआ है।

बहुत उजाला आ रहा है।

ढेर सारे लोग नज़र आ रहे है।

और ढेर सारी बस नज़र आ रही है ।